बाइक भी है और एक साइकिल भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारी लोगो की और बच्चों की भीड़ लगी हुई है।

इसमे बहोत तरह के फुल लगे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा गोदाम है।

और कांच के गिलास भी रखे हुए हैं।

शीशे के गेट भी बने हुए हैं और एक पोस्टर भी लगा हुआ है।